आस पास में हरे भरे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

सीलिंग पर बलून लटकाए हुए है एक आदमी भी बैठा हुआ है।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

इसके पीछे से एक बिजली की तार गई हुई है और अगल बगल में ढेर सारी बिल्डिंग भी दिखाई दे रहे हैं।

इस जीम मे एक ब्राऊन कलर की खिड़की भी लगी हुई है।

नीचे पीले कलर की बेंचेस भी लगी हुई हैं।

यह एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है जहां पर एक काउंटर पर आदमी दिखाई दे रहा है लाल कलर की कुर्सी लगी हुई है काउंटर का कलर सफेद है।

यह एक गार्डन का दृश्य है जहां पर फव्वारा लगा हुआ है।

हरे कलर की एक टेबल भी रखी हुई है और बगल में एक आदमी भी दिख रहा है।

बगल मे ढेर सारे अंडे भी रखे हुए हैं।

यहां पर तरह तरह की गाड़ियां पेट्रोल और डीजर भरवाने के लिए आई हुई हैं।

जिसमें से कि एक औरत अपना इलाज करवाने के लिए आई हुई हैं।

इसके आगे और पीछे बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं।

सामने में दो एक्सटिंगुइशर रखा हुआ है पीछे एक पिकअप पर समान लोड हो रहा है और एक व्हाइट कलर की बस भी है।